ए मगरमछ के मूर्ति बने हे ते ह मस्त दिखत हे ओति गाड़ी गे दिखत हवे तेनो ह मस्त दिखत हे पेड-पौधा हवे तेहुहा बढ़िया दिखत हे।

ए घर हे मस्त दिखत हे मस्त खिड़की देखत हे लाल कलर पोता हे गेट हावे मस्त घेरा हे जाली के पेड़ पौधा हे खुला आसमान हे मस्त देखत हावे।

ये ऑफिस बड़े बिल्डिंग ऑफिस मस्त दिखत हावे ऐमा के रोड भी बढ़िया दिखत मस्त टाइल्स लगे हावे अउ ऐमा के लाइट वाइट भी अच्छे दिखत है ऐमा पेड़ पौधा हावे तहु अच्छा दिखत हावे।

ए डाहक घर ह मस्त दिखत हवे एमा के ए ह दरवाजा भी पुराना जमाना के सही दिखत हवे एमा मस्त खिड़की लगे हवे ए एमा मस्त डाक घर म पोस्टर लगे हे।

ये पहाड़ ही के ये मस्त दिखत हे एमे के फुल पौधा ये फसल हो बढ़िया दिखत हे नीला आसमान मस्त दिखत हवे अउ अति बड़े पहाड़ी हे ए अउ मस्त हे पेड़ पौधा अति सारा हवे।